बहोत ही लम्बू पुल पाणी बहोत ही स्वच्छ और पेय जल लगण लग्यूं।

जन की फोटो मा जी आप ते देखेण लग्युं य एक कपड़ों की दुकान छा।

जख्म जी लोगोन अपड़ी-अपड़ी गाडी पार्क छन करी याँ का पिछाड़ी बटिन एक भौत ही बडिया मंदिर होलु आपथे दिखेण लग्यूं जो की भौत ही सुन्दर लगण लग्युं।